जिसमें टेबल्स भी रखी हुई है।

है जिसमें नीचे सीढ़ियां लगी हुई --

यहां पर एक वाइट कलर --

यहां पर एक बस दिखाई --

मछली मार्केट दिखाई दे रहा --

जिसमें बॉडी लोशन ब्यूटी पार्लर का सामान है।

दुकान है जिसमें फोटो कॉपी होती --

यहां पर एक सब्जी मार्केट --